इसमें एक छोटा फत्थर भी पड़ा हुआ है और एक आदमी उससे फोटो खींचते हुए नजर आ रहा है और एक लाल टी-शर्ट में खड़ा हुआ व्यक्ति अंदर की तरफ देख रहा है गुफ़ा के।

यहां पर एक आदमी बुकों की दुकान पर खड़ा हुआ है जो कुछ खरीदते हुए नजर आ रहा है।

यहाँ पर एक आदमी दिखाई दे रहा है सफेद कपड़े पहने हुए जो घर की ओर देख रहा है यहाँ पर हरे बड़े पेड़ भी हैं।

एक बैंक नजर आ रही है और उसका ए_टी_म लिखा हुआ नजर आ रहा है| यहाँ पे कुछ बाइक और स्कूटी खड़ी हुई है और एक गाड़ी खड़ी हुई है और एक आदमी फोन पर बात करते हुए नजर आ रहा है| और उसकी बिल्डिंग डबल मंजिल दिख रही है|

और इस ए.टी.एम. के अंदर एक आदमी रुपए निकालता हुआ नजर आ रहा है उसके साइड में सीढ़ियां भी नजर आ रही है।

यह एक झांकी नजर आ रही है जहाँ पर कई मूर्तियां है जहाँ पर देवियो की मूर्ति गणेश जी की मूर्ति और शेर की मूर्ति भी है।

--और तालाब की पीछे कीनो का सेट लगा हुआ है उसके पीछे एक जंगल है जो बोहोत हरा भरा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर बोहोत सरे ऑटो खड़े हुए है कुछ आदमी उसे फोटो खींचते हुए नजर आ रहे है |

में देखने पर नजर आता है की कुछ लोग खड़े हुए हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे मटके आकर के कुछ छोटे छोटे सी मंदिर भी बने हुए हैं ।

यहाँ एक आदमी नजर आ रहा है जो अपनी फोटो खिचवाते हुए दिख रहा है| उसके पीछे डेम बना हुआ और पूल भी बना हुआ है जो की सीमेंट का बना हुआ है।

वहाँ एक सफ़ेद कलर की बड़ी-सी बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसका नाम सदर अस्पताल गोपाल गंज है।

यहाँ पर कुछ आदमी घूमते हुए भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में बोहोत सारी बाइकें खड़ी हुई राइट साइड में एक बड़ी-सी कार भी खड़ी हुई है।